यहाँ एक मंदिर नज़र आ रहा है। जहाँ कही सारे लोग नज़र आ रहे है आजू-बाजु बड़े-बड़े पेड़ हरे नज़र आ रहे है और ऊ ऊपर वायर्स भी लगी हुई है।

यह एक बिल्डिंग नजर आ रहि है उस कि बाउंड्री भी नजर आ रहि है जहा लोहे कि सलियाये लगी हुइ है यहा एक पेड दो पेड भी नजर आ रहे है पिछे बहोत सारे पेड भी दिख रहे है।